देखने मे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है यह हमें बहुत ही सुंदर मुद्रे मे खड़ी दिखाई दे रही हैं।

यह हमे एक सेन्चुरी दिखाई दे रहा हैं तस्वीर सेन्चुरी के बहार से ली हुई हैं यहा गेट पर हमे कइ सारे चिड़ियों के तस्वीर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर मे हमे एक गुफा दिखाई दे रहा है यह गुफा देखने मे काफी बड़ा है वही हम यहा पर दो व्यक्तिओ के सर भी देख पा रहे है ऐसा लग रहा है जैसा की ये फ्लैश मारके अंदर की और --

इनमें हमे एक बड़ा सा मूर्ति दिखाई दे रहा है जो की देखने मे बहुत ही सुंदर लग रहा है एसा लग रहा है की जैसे की ये ईसामसि की मूर्ति है इसमें हमे क्रिस्चेन्स का होली साइन भी बना हुआ देखने को मिल रहा है।

अभि हम यहा पर बहुत सारे बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के पेड़ देख पा रहे है यह दृश्य रोमांचक लग रहा है।

मिल्क लस्सी कोल्ड-ड्रिंक दही और अन्य चीज़े बिखरी होती हुई दिखाई पड रही हैं।

यह चट्टान पे खड़ा है दूर देखने पे हमे कई पेड़ दिखाई दे रहे है जो की काटेदार प्रतीत हो रहे है।

दो हाथी दिखाई पड रहें हैं ऐसा प्रतीत हो रहा हैं जैसे कि यह पानी पीने के लिए नदी पे आए हों दूर हमें नदी के किनारे पेड़ दिखाई पड रहा हैं।